ये एक यहां पे बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

यहां पे नीचे हरी भरी घास उठी हुई--

ये एक बैंक दिख रहा है।

ये एक हैवी व्हीकल का बोर्ड दिख रहा है।